यह हमारा राष्ट्रीय पक्षी मयूर है और ये नृत्य कर रहा है।

ये व्यायामशाला है जिसमें काफी लड़के लड़कियां जिम करने आते हैं और यहाँ पे मैदान भी है और पेड़ पौधे भी लगे हैं।